यहाँ पर हमको एक गेट दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर से पुता हुआ है और नीचे गेट के नीचे जाली भी हमको दिखाई दे रही है ।

पेड़ मे एक खंभा भी खड़ा हुआ है और यहाँ ऊपर हमको बादल भी दिखाई दे रहा है।

हमको एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड के आ बाहर हमको यहाँ पर घर भी दिखाई दे रहा है एक घर यहाँ पर व्हाइट कलर से --

सामने यहाँ पर बुक्स भी हमको दिखाई दे रही हैं एक डॉल यहाँ पर रेड कलर की है एक वाइट कलर की है एक पिंक कलर की है एक येलो कलर की है।